एक्सफिग के प्रयोग से फीडबैक डाइअग्रैम बनाने के इस मौखिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
ब्लॉक डाइअग्रैम क्रीएशन के मौखिक ट्यूटोरियल में हमने यह डाइअग्रैम बनाया था
हम इन्हें ब्लॉक्स ट्यूटोरियल कहेंगे
कृपया इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले ब्लॉक्स ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ ले
इस ट्यूटोरियल में हम समझाएंगे के इस पेज पर दिखाए गए इस तरह के ब्लॉक डाइअग्राम्स कैसे बनाए
मैं एक्सफिग वर्ज़न 32 पैच लेवल 5 का इस्तेमाल करुँगी
हम blockफिग से शुरुआत करेंगे जोकी ब्लॉक्स ट्यूटोरियल में बनाए थे
एक्सफिग पर चलते है
फाइल को चुनते है और फिर ओपन
एंट्री बॉक्स में ब्लॉक को एन्टर करे और ओपन प्रेस करे या फिर blockफिग पर डबल क्लिक करे
फाइल पर सेव एएस आप्शन का प्रयोग कर हम इस फिगर को फीडबैक के नाम से सेव करते है
हमारे पास अब feedbackफिग यह फाइल है
ग्रिड्स पर क्लिक करके ग्रिड्स डालते है
कैनवास को ऊपर या नीचे करने के लिए दाएँ तरफ स्क्रोल बार का प्रयोग करे
प्रत्येक माउस बटन की भूमिका या कार्य ऊपर दाहिने तरफ दिखाया गया है
यह कार्य गतिविधि पर निर्भर होता है
इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करते है मैं माउस को वर्टिकल स्क्रोल बार पर ले चलती हूँ
बाएं बटन के तरफ की टिप्पणी देखे
मैं इसे बताने के लिए माउस को हटा नहीं सकती
इसका कारण है बटंस का कार्य बदल जाएगा अगर मैं कर्सर स्क्रोल बार से दूर करू
लेफ्ट बटन कैनवास को ऊपर ले जाएगा और राइट बटन उसे नीचे ले जाएगा
हम लेफ्ट या राइट बटन को क्लिक करने के बजाय सेंटर बटन सेंटर बटन पर क्लिक कर सकते है तथा ड्रैग करके कैनवास को ऊपर या नीचे कर सकते है
उसी तरह से आप ऊपर के स्क्रोल बार का प्रयोग करके कैनवास को राईट या लेफ्ट में ले जा सकते है
मैं अब मिडल buttonबीच के बटन पर क्लिक करके तथा कैनवास को पकड़कर और ड्रैग करके बॉक्स को बीच में याने सेंटर में लाती हूँ
जैसे ही माउस को छोड़ देती हूँ बॉक्स सेंटर में आ जाता है
चलिए अब इस ब्लॉक से शुरू करके हम अब फीडबैक डाइअग्रैम बनाते है
इस बॉक्स को कॉपी करते है
बॉक्स पर क्लिक करे और उसे चुने
माउस को एक नई जगह ले जाए और क्लिक करे
अभी कुछ टेक्स्ट डालते है
टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते है जो बाएं ओर के पैनल में ट द्वारा बताया है
टेक्स्ट का साइज़ चुनते है
माउस को वाल्यू बॉक्स पर ले जाए और 16 एन्टर करे
सेट पर क्लिक करे
अट्रिब्यूट पैनल में से टेक्स्ट जस्ट बटन पर क्लिक करे
सेंटर अलाइन्मन्ट याने मध्य संरेखण को चुनते है
पहले बॉक्स के सेंटर में क्लिक करते है
ओह मैंने सही जगह नहीं चुनी है
कर्सर को हटाने के लिए मैं दूसरी जगह पर क्लिक करती हूँ
फिर मैं सही जगह पर क्लिक करुँगी
कंट्रोल यह टेक्स्ट अब टाइप कीजिये और माउस क्लिक करे
अब हम एरो के साथ कुछ और लाइन्स एन्टर करना चाहते है
पॉलीलाइन बटन पॉलीलाइन बटन को चुनते है
अट्रिब्यूट पैनल में से अरो मोडे बटन को चुनते है तथा दूसरे ऑप्शन को चुनते है
अरो टाइप बटन तथा एक एरो हेड को क्लिक करते है
एक पॉइंट पर क्लिक करते है जहाँ हम चाहते है के लाइन शुरू हो
हमें जो लाइन चाहिए उसके आखिर में माउस को ले जाए
अब बीच के माउस बटन से वहाँ क्लिक करते है
एरो के साथ एक लाइन बनी है
मुझे एक सर्कल रखना है
दाएँ ओर के पैनल से सर्किल ओन थे लेफ्ट को चुनते है
हम उसे पहले बॉक्स के दाएँ तरफ रखेंगे
माउस क्लिक करे
जैसे ही मैं माउस को दूर ले जाती हूँ सर्कल बड़ा हो जाता है
जब हमें सही साइज़ मिल जाता है माउस को क्लिक करते है
ओह जितना हम चाहते थे उससे बड़ा सर्कल है
मैं इसे ऊपर दिए एडिट बटन के प्रयोग से उंडो अन्डू कर सकती हूँ
हम इस चीज़ को डिलीट भी कर सकते है दाएँ ओर के पैनल में दिए डिलीट बटन के प्रयोग से
चलिए ऐसा करते है
क्रोस हेयर्स के साथ एक ढांचा दिखाई पड़ता है
सभी चीजों याने ऑब्जेक्ट्स के की पोइंट्स भी दिखाई देते है
क्रोस हेयर्स को की पॉइंट पर ले जाओ जोकी सर्कल बताता है और क्लिक करे
अगर कभी कोई चीज़ डिलीट हो जाती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं
आप उसे उंडो कर सकते है160 एडिट बटन क्लिक करे और वैसे ही माउस को क्लिक रखे हुए उंडो पर ले जाए और फिर माउस को छोड़ दे
अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स काफी नज़दीक है तो उन्हें चुनने में कठिनाई हो सकती है
ज़ूम फीचर की मदद से हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते है
बाएं ओर पर व्यू बटन को क्लिक करे उसे पकडे रहे है और किसी भी एक ज़ूम ऑप्शन को चुने
ज़ूम टो फिट थे कैनवास पर आकर माउस को छोड़ दे
अब चीजों के बीच विभेद करना आसान होगा
मैं सर्कल को डिलीट करती हूँ
मैं अनजूम अनज़ूम करती हूँ
स्क्रोल बटंस की मदद से मैं आकृति को मध्य में लती हूँ
मुझे डिलीट सिम्बल को ऑन रखना नहीं पसंद क्योंकि कभी गलती से कुछ डिलीट हो सकता है
मैं कोई भी दूसरा बटन चुनकर इसे बदल सकती हूँ
मैं बाएं सर्कल को चुनती हूँ
मैं दुबारा सर्कल बनाती हूँ
मुझे इस लाइन से एक और लाइन डालनी है
इसलिए पहले हम लाइन पर dotडॉट डालेंगे
बाएं ओर के पैनल से लाइब्रेरी लाइब्ररी पर क्लिक करे
लाइब्ररी किताबो के देर द्वारा बताई गई है
एक डाइअलॉग विंडो खुलेगा
लाइब्ररी के बगल में यह कहता है नोने लोडेड
उस पर क्लिक करे और पकडे रखे
उपलब्ध लैब्ररीज़ की सूची दिखाई देगी
माउस को लोजिक लाइब्ररी पर ले जाए और छोड़ दे
स्मॉल डॉट याने छोटे डॉट पर डबल क्लिक करके उसे चुने
डाइअलॉग विंडो बंद होगा
चुने हुए छोटे डॉट के साथ हमें क्रोस हेयर भी दिखता है
क्लिक करके डॉट को लाइन पर रखते है
कर्सर और छोटा डॉट फिर से दिखाई पड़ता है और सुझाव देता है के हम उन्हें किसी और जगह भी रख सकते है
हमें डॉट को किसी और जगह नहीं रखना
माउस के राइट बटन से उसे क्लोज़ करते है
राइट बटन अन्डू ऑपरेशन करता है
इस केस में डॉट सेलेक्शन याने चुनाव हटा दिया गया है
चलिए इस डॉट से सर्कल तक एक लाइन बनाते है
पॉलीलाइन को चुनते है
पहले जो चुनाव हुए है वोह याद रखे गए है जैसे के अरो मोडे तथा अरो टाइप
एक सेशन में एक्सफिग पैरामीटर वाल्यूज़ को याद रखता है
डॉट पर क्लिक करे
माउस को नीचे ले जाइए और क्लिक करे
अब माउस को बाएं तरफ मोड़िए जब तक सर्कल के आखिर तक नहीं पहुँचता
क्लिक करे
माउस को सर्कल पे ले जाए और अब माउस के बीच के बटन को क्लिक करे
सर्कल के बाएं तरफ एक और लाइन बनाते है
एक्सफिग के उपरी बाएं कोने से फाइल बटन का प्रयोग करके तथा सेव को चुनकर इस फिगर को सेव करते है
अब फाइल को एक्सपोर्ट करते है
फाइल बटन को फिर से क्लिक करते है और एक्सपोर्ट को चुनते है
अब लैंग्वेज और फिर पीडीएफ को चुनते है
हमें feedbackपीडीएफ फाइल मिलती है
ओपन feedbackpdfइस कमांड से फाइल को ओपन करते है
अब हमारे पास ब्लाक डाइअग्रैम है जैसा हम चाहते थे
हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है
आपके लिए एक नियत कार्य है
ब्लोक्स में अलग अलग चीज़े रखे
रोटेट तथा फ्लिप जैसे अन्य ऑप्शंस की कोशिश करे
feedbackफिग फाइल को एडिटर में देखे तथा विभिन्न घटकों को पहचाने
लाइब्ररी का इस्तेमाल कर अलग ब्लाक डाइग्राम्स बनाए

इसे आई सी टी द्वारा नेशनल मिशन ओन एड्यूकेशन एम् एच आर डी भारत सरकार से सहायता प्राप्त है
spoken tutorialorgnmeict इंट्रो इस लिंक से यह मिशन के बारें में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है
हम आपके सहयोग तथा आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते है